वहाँ सीढ़ियों से ऊपर जाके मंदिर में प्रवेश कर --

शायद वो गुलमोहर का उसके नीचे दो ड्रम हैं।

बाउंड्री है। बाउंड्री से लोग आ-जा रहे हैं।